यहाँ बहुत सारे बड़े-बड़े पत्थरो के चट्टान है। बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ है बहुत ही हरे-भरे है। बहुत सारे झाड़िया है।

बहुत सारी औरतें अदमियां है उस आदमियों के हाथों में सामाने भी है। कुछ बिजली के खंबे भी है इसमें बहुत सारे हाई लेवल की तारे खिंची गई है।

एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है हर बिल्डिंग के पीछे बहुत सारे छोटे- छोटे पौधे है इसमे बहुत सारे फुल है।

यहाँ मार्केट है। यहाँ बहुत सारे सामाने बेच रहे है। बहुत सारे हरी-हरी सब्जियां बेच रहे है। कुछ बाइक भी है। यहाँ बहुत सारे आदमी जा रहे है। बहुत सारे सामाने है।

एक सुंदर सा रास्ता भी है। यहाँ बहुत सारे दूर-दूर में घरे हैं।